और जो कि नीचे रखी हुई हैं और साथ ही में एक बोरी भी दिख रही है जो कि सफेद रंग की है।

और बहार ढेर सारे शूज रक्खे हुए है और पोस्टर में लिखा हुआ है --

और झूले लगे हुए हैं और दो छोटे-छोटे लड़के उनपे बैठ के झूले झूल रहे हैं। ने ब्लैक के कपड़े पहने हुए हैं।

ब्राउन कलर की है जिन्हे वाइट कलर --

कलर लिए हुए हैं चार्ट पेपर पे उन लोग अपने कुछ काम कर रहे हैं।

यहाँ पे स्विमिंग स्लाइड भी लगी हुई है।

और यहाँ पे पोस्टर भी ढेर सारी स्कूटियों के लगे हुए हैं।

यहाँ पे ढेर सारे लोग दौड़ रहे हैं खेल रहे हैं।

इसमें हमें दो विंडो दिख रहे हैं जो कि मिरर टाइप्स के हैं और नीचे हमें एक पिलर भी दिख रहा है।